यह एक किताब सेंटर है यहां बहुत सारी किताब काफी मात्रा में रखी हुई है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति नदी में आए हुए--

फोटो के बगल में एक ब्लू कलर की कार है।

यहां पर सभी यात्री बस में सवारी के लिए आए हैं।

उनके हाथों में बहुत सारे सामान भी हैं और यह बस एक लाल कलर की है और एक हरी कलर की है।

यह एक कपड़े की दुकान की फोटो है।

बहुत से वहां महिलाएं एवं बच्चे सभी काफी मात्रा में आए हुए हैं और यहां पे सब पूजा कर रहे हैं।

यहॉं के चारो ओर बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक मार्शल आर्ट्स का क्लासरूम हैं।

यह एक मंदिर है यह दुर्गा पूजा का मूर्ति की स्थापना की गई है।

य घर को दिखने में यह घर की शोभा को बढ़ाती है।

अगल बगल मे पेड पौधे से लगा हुआ है यहां पे लाईटे भी लगी हुई है सोलर पैनल वाला।

यहां पे अनेक प्रकार की मशीने रखी हुई है और अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं।

यह एक पानी का झरना जैसा कोई दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत अच्छी झरने आ रही है।

यह एक मॉल है यहाँ पे बहोत सारी लाइटे व ए_सी लगे हुए हैं।

सलून के बगल में बहुत सारे कुर्सियां व--

यह एक पेड़ा भंडार है या पेड़ा भंडार का नाम पुरानी दुकान बाबा धाम पेड़ा भंडार है।

बगल के बेंच भी हैं हाई स्कूल को व्हाइट और रेड कलर का पेंट किया हुआ है ये स्कूल को काफी अच्छा लग रहा है दिखने में।

यहाँ पे पर्दा भी लगा हुआ है रूम में लोहे की गेट लगी हुई है।

यह एक वाटरपार्क की तस्वीर है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आये हुए है घूमने के लिए और तीन चार बाइके भी नजर आ रही है।

यह एक स्टेडियम है यहां पर बेस्टमैन बाल को मारने के लिए तैयार है और वहीं पे कीपर स्टंप करने के लिए तैयार है।

यह एक मंदिर का दृश्य है जिसके गुंबज पर लाल ध्वजा व लाइट लगा हुआ है।